यहां पर बहुत अच्छा पार्क सा है पास के मे यहां पे पेड़ पेड़ पौधे है और यहां पर एक घर सा है और यहां पर झोपड़ी सी है और यहां पर लाइट लग रही है।

यहां पर सजावट हो रही है बहुत अच्छी और यहां पर लाइटें लगी हैं हरे कलर की सफेद कलर को--

और वो बहुत सारा सामान है यहां पर --

यहां पर खाने पीने का सामान सा है और यहां पर एक सोसे की बोतल रखी है।

कुर्सी पड़ी है यहां पर और बाल यहां पर।

बहुत अच्छा डॉक्टर है यहाँ पर और डॉक्टर के सामने यहाँ पर भीड़ सी लग रही है।

यहां पर एक ग्रे मैट है और हरे कलर का मैट है और लाल सा कलर है और दो आदमी सारे वाले यहां पर लाइट लग रही है बहुत अच्छी--

यहां पर एक बिल्डिंग्स ही है वो बिल्डिंग्स है हरे कलर --

एक झण्डा लग रहा है ओ बी_जे_पी का।

बहुत अच्छे और यहां पर पेड़ पौधे और यहां पर फूल से लग रहे हैं और यहां पर--